यह तरफ धूप ही धूप है और यहां पर धूप से बचने के लिए पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

ये एक स्पोर्ट्स की दुकान है जिसके अंदर तीन फुटबॉल पड़ी हुई है जिनके रंग सफेद लाल और सब्ज --

डॉक्टर बनने के लिए आती हैं यहां पर तो उनको डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाया जाता है जिसके अंदर किताबें भी हैं कॉपी भी है।

तो उनसे पैसे लेकर लकड़ियां उनको दे दी जाए यहां पर पंडित लकड़ियां जमा करके उसके ऊपर डेड बॉडी रख के --